और प्लास्टिक की डबियो में कुछ चॉक्लेटस और बिस्किटस रखे हुए है।

और सामने कुर्सियों पर कुछ औरते बैठी हुई है।

और पीछे एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है और ऊपर आसमान में बदल छाये हुए है।

सामने बहुत सारे नेवला खड़े हुए है और वह एक लकड़ के ऊपर खड़े हुए है।

सेब मौसमी अंगूर और पपीता सब रखे हुए है और फल बड्डे छोटे हरिया पत्ती लगी हुई है।